यहां पे बहोत सारे सामान रखे दि हैं।

पे बहुत सारे जींस मिले रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग सफेद कलर में है और यहां पे बहुत सारी लाइट लगाए गए हैं जो सफेद कलर में है।

यहाँ पे बहोत सारे जींस है जो अलग अलग कलर में है ।

एक रोड है रोड काला कलर में है।

यहां से बहुत नाव है जो अलग अलग कलर में है और यहां से बहुत ही आदमी--

और यहां पे बहुत सारे पेड़ है जो हरा कलर में हो और पानी गहरा है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं जो हरा कलर में है।

यहां पे बहुत सारे घर भी हैं ।

और यहां पे जिम करने का बहुत समान है।

लाइट सफेद कलर का है और यहां पे घर भी है जो सफेद कलर में--

यह एक बेडरूम है।

यहां पे बहुत सारी कुर्सी लगाए गए हैं।

इधर बहुत पेड़ है जो हरा कलर में है।